पीछे बहुत बड़ा सा एक पेड़ रखा हुआ है।

ऊपर की तरफ आसमान में बहोत से बदला है।

और इधर सामने की तरफ एक मेज--

और साइड में एक दीवार पर श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी की भी फोटो लगी हुई है।

और सामने की तरफ दो बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और इसने अ बैंगनी शर्ट और सफेद पैंट पहन रखी है।

पास ही में छोटा सा खजुरिया का पेड़ भी खड़ा है।

और इधर झोपडी के अंदर बहोत सारी कुर्सी और मेज पड़ी है।

यही बालों पर छिड़कने वाली बॉटल भी सामने रखी हुई है।

पूर्व मध्य रेल लिखा हुआ ऊपर की तरफ है।

और तेल के पीपा भी रखे हुए हैं।

साइड में एक पाइप सी गई हुई है।